इस तस्वीर में हमें यह दिख रा कि यह एक टेबल में टेबल दिख रा है जिसमें बहोत सारी प्लेट लगी हुई है द-दो प्लेट में --

इस तस्वीर में हमें यह दिख रहा है कि यह एक फील्ड का तस्वीर है।

एक आदमी यहां रेड कलर का शर्ट पहेनकर टोपी पहेनकर खड़ा भी है।

इस तस्वीर में हमें यह दिख रहा है कि यह हरि नगर का--

इस फोटो में हमें यह दिख रहा है बहोत सारे--

इस तस्वीर में हमें दिख रहा है कि पतांजलि कंपनी का सब कुछ रखा हुआ है इस दुकान में रैक में।

जिसमें बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं हरे हरे।

एक्क बच्चे का मूर्ति है जिसमें उसको फ्रॉक पहनाया हुआ है पीला कलर का लाल कलर का और बाल है उसके छोटे-छोटे।

टेबल पे बहुत सारे दवाइयां रखी हुई है।

इस तस्वीर में हमें दिख रहा हैं रमा हार्डवेयर का दुकान है।